इसमें एक आदमी चाय की दुकान पर बैठा है।

इसमें एक घर दिखाई दे रहा है।

सामने एक लोहे का गेट है।

एक तरफ एक पानी का कैंटर भी दिख रहा है।

कुछ एक साइड में ईटों का ढेर लगा हुआ है।

एक ऊंची मंजिल है जो हरे रंग की दिखाई दे रही हैं।

जिसने लाल रंग की शर्ट पहनी है।

गमलों में सुंदर सुंदर फूल खिले हुए हैं।

पास ही कुछ घांस फूस भी है।

इसके अंदर बहुत सुंदर-सुंदर मछलियां हैं।

कुछ टेबल कुर्सी पर काले रंग का कपड़ा हैं।

और शीशे के गेट लगे हुए हैं।

इसमें एक बहुत बड़ा मैरिज हॉल दिखाई दे रहा है।

दुल्हन ने घूंघटा पकड़ा हुआ है।

वह लाल जोड़े में सजी हुई है।

एक लकड़ी की छोटीसी अलमारी दिखाई दे रही हैं।

बैंक का नाम एच_डी_एफ_सी बैंक है।